एक आदमी बोर्ड लगा रहा है दुकान का जिसमें दुकान का नाम है भारत क्लॉथ स्टोर फैंसी वस्त्रालय विक्रेता।

यहां पे शादी कार्ड दुकान है। जिसमें कार्ड छपता है और ये दुकान द बोर्ड है। बोर्ड के बाद इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। काला धुंधला दिख रहा है।

बगल में कुछ कोई एक्सप्रेस मिनी करके कुछ खुला हुआ है दुकान का ही नाम है और इसमें अंधेरा एकदम खूब है।

यह बर्तन हाउस है और यहाँ पर तरह-तरह के बर्तन बिक रहे है। इसमें --

जो कीआम आदमी की जरूरत के चीज हैं बगल से दरवाजा है दरवाजा दरवाजा पेंट किया हुआ है और दरवाजा --